सामने एक आदमी खड़ा है जिसने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई है। उस आदमी ने मास्क भी लगाया हुआ है।

सभी कुछ कुछ अपनी डिजाइनें बना रहे हैं कागज के ऊपर।

लकड़ी का डमरू बना हुआ है महिलाएं और पुरुष कदम से कदम मिला कर चल रहे हैं।

वाल के सामने एक बहोत बड़ा म आईना लगा हुआ है जिसे देख के बच्चे अपने प्रयास कर रहे हैं।

यह एक डेयरी का दुकान है जिसके आगे कुछ लोग खड़े हैं।

यह एक समारोह का मंच है जिसपे एक आदमी खड़े होके नृत्य प्रस्तुत कर रहा है।

आदमी ने उजले कलर का फ्रॉक पहना हुआ है और उजले कलर का धोती पहना हुआ है मंच के कारपेट का रंग लाल दिखाई दे रहा है।

हॉल के अंदर बहोत सारे कुर्सियां रखी हुई हैं जिसके ऊपर बहोत सारे लोग बैठे हुए आपस में बाते कर रहे हैं।